गाड़ी को भी दिखाया गया है | वहीं बाहर की ओर हमें एक छोटा पार्क दिखाया गया है |

त्रिकुंड ढाबा लिखा हुआ दिखायी दे रहा है जहाँ पर बहुत सी कुर्सियाँ वो बहुत से पर लाल रंग के पर्दे भी लगे हुए हैं।